ये एक पार्क है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी है।

एक वार्ड है जो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर बेड पड़ी है जिसपे कुछ नीले रंग के गद्दे बिछे है।

फार्महाउस है जिसके ऊपर टीन का तख्ता पड़ा हुआ है यहाँ पर दो-तीन अ कार खड़ी हुई है जो सफेद रंग की दिख रहे हैं।

यहाँ पे बहुत लाइटे है इसके पीछे की खिडकिया काले रंग की दिखाई दे रही है जो सरियों की बनी है।

बिल्डिंग है जो लाल और सफ़ेद रंग की दिख रही है यहाँ पे काले रंग के तार लगे हुए है।

इसके बीचों बीच में एक गड्डा है जहाँ पे कुछ उ कचड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है।

यहाँ पे एक पेड़ है जिसमें कुछ हरे से पत्ते लगे हुए है यहाँ आस-पास भी बहोत सारे पेड़-पौधे है और हरियाली भी है।